ये एक नदी है। नदी में दो पुरुष और महिला इ स्नान कर रहे हैं और ऊपर ओवरब्रिज भी बना हुआ है। आसपास --

ये एक चौराहा है। चौराहे में बहुत सारे पूरुष महिला भी दिख रही हैं और यहाँ प और यहाँ पे बहुत सारे --

और यहाँ पे चेयर भी पड़ी हुईं हैं। यहाँ का दृश्य बहोत ही सुन्दर दिख रहा हैहै और यहाँ पे फेन भी लगा हुअ --

और यहाँ का कमरा सफ़ेद रंग से पुता हुआ है। यहाँ का दृश्य बोहोत ही सुंदर दिख रहा है।

ये पोस्टर के सामने एक टेबल पडा हुआ है| उसपे प्रूश कुछ देख सा रहा है| ऊपर चेयर भी पड़ी है| ऊपर पेन --